मुझे इस फोटो मैं दुकान दिखाई--

मुझे इस फोटो में एक बहोत ही सुंदर कमरा दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

पेप्सी जैसे ठंडे दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो में बहोत सारे पेड़ पौधे--